और यहां पे कुछ आदमी के चेहरों पे बलर लगा हुआ है।

यहां पे एक आदमी उड़ा रहा है और एक डॉगी भी खड़ा है।

और सामे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

और दीवार में कुछ पोस्टर भी लगे हुए है।

यहां पे कुछ लेडिस खड़ी हैं।

सामने कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।